एक जनता दरबार नजर आ रहा है जिसमें लोग यहाँ पे जनता दरबार लगाते हैं और ये एक पैलेस भी नजर आ रहा है साथ में उसके बगल में और यहाँ पे साफ़ सफाई भी है लाइट वगैरह सबका सुविधा है यहाँ पे और बहुत अच्छा कलर भी इसको किया गया लाल कलर से किया गया हुआ है इसको और अगल बगल में हमको पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

यह एक कॉलेज नजर आ ड़हा है औड़ इसमें पार्किंग भी है औड़ ग्राउंड भी बोहोत सुन्दर है औड साफ़ सुथरा है औड इसका रंग लाल ि यलो और ब्लू नजर आ डहा है और इसके ऊपर गुम्बज भी नजर आ डहा है देखने को बहोत ही सुन्दर है |

और उसमें जो ऑइल वैगरह है वो सब के डिब्बे वहाँ पे रखे हुए हैं और मेकैनिक वहाँ पे एक आदमी खड़ा है।